और बच्चे पेपर पर कुछ वर्क करते हुए नज़र।

जहां पर लोग गाड़ियों पे आते जाते हुए नजर--

जहां पर बहोत सारे पेड़ और फूल दिखाई दे रहे है।

यह चित्र एक लकड़ी की फैक्ट्री का दिखाई--

बहोत बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यह चित्र एक किताबों की दुकान का है जहां रैकों में--

तीन चार लड़के भी दिखाई दे रहे हैं।

आ रहे हैं जो कि अपने कैमरे से--

कागज़ पर कुछ लिखा हुआ है एक सामने टॉयलेट लिखा हुआ है।

दो क्रीम कलर के खंभे भी दिखाई दे रहे हैं।

चित्र में हमें एक बड़ीसी होटल --

दिखाई दे रही है जहाँ बाहर लाइटें चमक रही है।

ग्रीन कलर की कार खड़ी हुई हैं।

एक बाइक भी खड़ी हुई हैं।